ये बस स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे कुछ लोग --

और कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपस में बातचित कर रहें हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं।

और तीन आदमी खड़े हुए हैं वहा पे। अ --

फिसलपट्टी वाला झूले लगे हैं यहाँ पे।

और एक खम्भा लगा हुआ है। यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है। यहाँ --

कई बच्चे लाइन से सीक्वेंस से खड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत बड़ी गैलरी है।

स्टेडियम में ये प्रोग्राम किया गया है।

और पीली कलर की बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है उसपे एक पट्टी लिखी हुई --

यहाँ कुछ खाली जगह पड़ी हुई है। एक वाइट कलर का मकान बना हुआ है। यहाँ पे

एक आदमी उसके बगल में हाथ लगा के खड़ा हुआ है और साइड में कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और एक आदमी की परछाई दिखाई दे रहे है अ काफी मतलब कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है साइड में।

और लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहें हैं।

और सूट्स है यहाँ पे।

और एक आदमी खड़ा हुआ है व्हाइट टी-शर्ट में दिखाई दे रहा है एक आदमी बाइक --

बहुत घास पड़ी हुई है।

चारो तरफ उम्म मैदान घांस मैदान का बना है।

और कुछ घर बने हुए है साइडों में और दोनों दो --

और उधर पेड़ दिखाई दे रहें हैं मेरेको।

मंडप है ये और पूरा अच्छे से डेकोरेशन वो जो है इसकी वो काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे एक वो --